यहां पर कुछ अनार सेव--

ये काफी बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर शादी समारोह चल रहा है।

एक औरत खड़ी हुई दिख रही है।

ये एक कॉफी हाउस है यहां पर दो आदमी बैठकर कॉफी --

ये एक कार का शोरूम है जहां पर एक कार खड़ी हुई है और एक आदमी औरत--

पास में एक बच्चा भी खड़ा हुआ है और कुछ लोग सामने की तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक काफी सुंदर पार्क जैसा बना है बीच में एक गोल डिजाइन का स्विमिंग पूल भी बना हुआ है।

नारियल के पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।